और उसके बगल में ब्लू कलर का कुछ पर्दे नजर आ रहे हैं।

ये एक बहोत बड़ा जगह है जिसमें दो आदमी आपको खड़ा दिखाई पड़ रहा है।

जोकि टेंट चारो तरफ टेंट लगा हुआ है और पिछे में बहोत सारा वायर है लाइन है।

एक तलाब आपको दिखाई पड़ रहा है जोकि तिन आदमी बोट पर बेठे हुए है जोकि और एक सामने में जोकि वो लोग चल रहे है।

जिस उनका कलर है सादा और--

आसमानी रंग में उम कपड़ा पहन के रखे हुए हैं और जोकि जहाँ बेठते हैं उसका रंग पिला रंग का है।

जिसका रंग आसमानी और सफेद रंग का है और बोर्ड में एप्लो करके लिखा गया है।

और सीढी में सिल्वर कलर का रंग दिखाई पड़ रहा है।

और फोटोफ्रेम है और एक दील है और एक भगवान जी का तस्वीरे है।

एक लड़की का तस्वीर है और उसके बगल में एक पर्दे लटके हुए है।

और नीचे में पीला रंग का सामान है आपको दिखाई पड़ रहा है।

और ब्रेंच सारे बचे ब्रेंच पे बेठे हुए हैं और पीछे साइड में एक खिड़की है।

यह एक बैंक है सामने में एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है साइड में माउस है उसके ठीक साइड में पेन और कॉपी है और एक स्टेपलर पड़ा हुआ है।

और एक सामने पिलर में बोर्ड पे चिपका के रखे है जो केलेंडर है और उसके साइड में एक सफेद रंग का छोटा सा पँखा है।

क्योंकि दो दूकान आपको दिखाई पड़ रहे है जोकि सफेद रंग के हैं।

दो तरफ से बहोत बड़े-बड़े पर्दे दिए गए हे और एक सामने में एक सोफा है जो की सफ़ेद और लाल रंग में है।

और नीचे में मिट्टी है उसके बगल में एक घड़ है जिसमें बहोत छेदा-छेदा करके मोका आपको दिखाई पड़ रहा है।

और बकरी सफेद और काला रंग में है।

और बुलडोज़र का बहोत बड़ा-बड़ा चक्का है।

और उसके बगल में एक प्रित भी दिखाई दे रहा है और एक डब्बे में तीन चार पेन दिखाई दे रहे हे ।

और एक बहोत बड़ा टेबल है जो की काला रंग में है और तीन साइड में टेबल है जो कि वो भी काला रंग का है।

और एक आदमी ब्रेंच पे बेठा हुआ है और एक नीचे में जमीन में बेठा हुआ है और दो ओरत दूर में है और एक बच्चा स्लिप कर रहा है।

और उसके ठीक सीधे में छोटे छोटे डब्बे बहोत सारे रखे गये है।

और बहोत सारे ऐसे छोटे-छोटे बड़े-बड़े तस्वीरे लगे हुए हैं और उसके बगल में एक दूकान है।

और थोड़ा-थोड़ा हरा का भी फिनिशिंग दिया गया है और निचे में हरे-भरे आपको दिखाई पड़ रहे हे और आसमान बिलकुल आसमानी रंग का है।

और लम्बे लम्बे कुछ खम्बे भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं।

जो कि छोटे छोटे फूल आपको दिखाई दे रहे है जिसमें हडे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

और एक पीछे में बहोत साड़े पेड़ आपको दिखाई पड़ रहे है जिसमे छोटा छोटा फूल लगा हुआ है।

जो की स चारों तरफ पानी फेंक रहे हैं और नीचे में हरा भरा हरयाली जैसा घाँसे दिखाई दे रहे है।

और नीचे मे एक गेट है जो कि बहोत बड़ा है और बगल मे एक छोटा सा काला रंग का है।

और साइड में एक बहोत लम्बा खम्बा है जोकि काले रंग में है।

यह एक ट्रेक्टर है जिसका रंग हरा रंग का है और बड़ा बरा चक्का है जो काला और पिला रंग का दिखाई दे रहा है।

पीला रंग का है बैगनी रंग का है और ऊपर में बीच में मिडिल में--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

और अ वो पीछे में एक टेंट बना गया है जोकि लाल रंग का है।

और एक बहोत बड़ा गेट है जोकि काले रंग का है और दो ल लेडिज है जोकि एक लड़की है।

यह एक मंदिल है जो कि सफ़ेद और लाल रंग का है।

यहाँ पर बहोत सारा गाड़ी दीखाई दे रहा है जो कि काले रंग का है और कुछ सफेद रंग का है।

यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई दे रहा है जो बुलडोज़न में स्कोट एफ लिखा है जो आसमानी रंग का है।

और जो कि यहाँ पर काम हो रहा है और यहाँ पर एक गाडी खड़ा है।